इसमें मुझे तीन मूर्तियाँ दिखाई दे रही है और ए एक जो एक माँ की दिखाई दे रही है।

इसमें बहुत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि बहुत ही अच्छी है।

इसमें दिखाई दे रहा है यहां पुरानी सी बिल्डिंग है जो कि ऐसे ही दिखाई दे रही है जो कि ज्यादा देखने में ज्यादा अच्छी नहीं है सामने कुछ घर दिखाई दे रहे है और यह पूरी--

इसमे आसमान दिखाई दे रहा है और वहां नीचे बहुत ही अच्छी हरियाली दिखाई दे रही है और इसमे तीन से चार ऐसे खन बने हुए है जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे है।

सामने कुछ गाड़ियाँ रखी हुई हैं साइकिल रखी हुई हैं सामने और तीन बच्चे स्कूटी से जा रहे हैं और एक ऑटो निकल रहा है।

यहां पर मुझे एक स्कूल दिख रहा है जिसपर कक्षा लिखा है और यह बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है यह।